नमस्कार इस टयूटोरियल में मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे एक सरल php अपलोड स्क्रिप्ट बनाएँ
यह हमारी उपलोड dot php फाइल में थोड़ा अधिक अग्रिम होगा
हम हमारा index dot php इस्तेमाल करेंगे उपयोगकर्ता को एक फॉर्म देने के लिए हम मुख्य रूप से html कोड इस्तेमाल करेंगे जिससे कि वह इस विशिष्ट फाइल को जमा कर सके
फिर upload dot php में हम इस फाइल को संसाधित करेंगे फाइल की कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे जैसे कि इसका नाम इसका प्रकार साइज़ अस्थायी संचित नाम और कोई एरर सूचना यदि पाई गयी हो
एरर सूचनाओं का इस्तेमाल यह जानने के लिए कर सकते हैं कि वह पायी गयी हैं या नहीं
फिर हम फाइल को संसाधित करने जा रहे हैं और उसको हमारे वेब सर्वर में एक विशिष्ट डायरेक्ट्री में सेव करेंगे
इस ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में मैं आपको जल्दी से बताऊँगा कि कैसे विशिष्ट फाइल का प्रकार जाँचे जिससे कि आप इसे फाइल टाइप्स से सुरक्षित कर सकें
हम यह भी सीखेंगे कि फाइल की फाइल साइज़ को कैसे जाँचें जिससे कि आप के पास अधिकतम और न्यूनतम फाइल साइज़ हो
अतः यहाँ मैंने uploaded नामक एक फोल्डर बनाया है जिसमे मैंने मेरी index और upload dot php फाइल्स बनायीं है
और यहीं मेरी फाइल्स संचित हो रही हैं जब वे एक बार अपलोड हो जाती हैं
जब फाइल्स अपलोड की जाती हैं तो शुरुआत में वे वेब सर्वर पर एक अस्थायी जगह पर चली जाती हैं नाकि इस फोल्डर में
html के लिए हमें एक फॉर्म बनाने की आवश्यकता है यह करने के लिए हमारे पास एक form action है और हमारे पास एक विशिष्ट action है जोकि upload dot php है और हमने हमारी फाइल यहाँ बना ली है
method को post के रूप में सेट किया है इसका कारण यह है कि हमें इसे get वेरिएबल में संचय करने की आश्यकता नहीं है
क्यों क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से हम नहीं चाहते कि वेबसाइट पर भेजे जाने वाले binary data को उपयोगकर्ता देखे
और साथ ही यहाँ हमारे get वेरिएबल पर सौ अक्षरों की सीमा है
अतः आपके पास एक काफी छोटी फाइल होगी यदि आपके पास डेटा के केवल सौ bits हैं
ठीक है हमारे पास एक और पैरामीटर है जिसे आपने इससे पहले नहीं सुना होगा
यह enctype है एन्कोडिंग टाइप जिसका मतलब है कि हम कैसे इसे इनकोड करने जा रहे हैं
यह multipart होगा और हमें एक फॉरवर्ड स्लैश की आवश्यकता है और फिर यह फॉर्म data होगा
संक्षिप्त में हम इस प्रारूप को डेटा के रूप में जमा कर रहे हैं यानि binary data शून्य और एक जिसे मैं यहाँ पहले ही बता चुका हूँ
ठीक है हमें type मिल गया है जिसमें यह एनकोड होने जा रहा है हम अपना फॉर्म यहाँ समाप्त करेंगे
हमें अपनी फाइल के लिए इनपुट के रूप में कुछ एलीमेंट्स की आवश्यकता होगी
इस type को file के रूप में सेट किया गया है और हम इसे विशिष्ट रूप से myfile बोलेंगे
ठीक है पैराग्राफ यहाँ खत्म होता है और फिर हमें बस सबमिट बटन की आवश्यकता है
ठीक है तो चलिए इसे अभी देखते हैं इसे बंद कर देते हैं
file upload पर क्लिक करिये ओह चलिए वापस चलते हैं input मैंने यहाँ 2 us टाइप कर दिए हैं
वापस चलते हैं आप यहाँ देख सकते हैं हमें हमारा इनपुट मिल गया है
मैंने इसे ब्राउस कर सकता हूँ हम देख सकते हैं हमारे पास फाइल्स हैं जिसे हम उपलोड कर सकते हैं
ठीक है अतः इसे उपयोग के लिए और आसान बनाते हैं
फाइल अपलोड करें इसे रिफ्रेश करते हैं हमें यहाँ एक अच्छा पेज मिला है
हमें हमारा हेडर मिला और एक फाइल को यहाँ अपलोड करने की सम्भावना मिली साथ ही आवश्यकता पड़ने पर खुद से भी टाइप कर सकते हैं
और साथ ही हमारे पास अपलोड बटन है जोकि हमारी upload dot php जमा करता है
ठीक है तो upload dot php के अंदर हमें इस फाइल के संसाधन के लिए एक तरीका चाहिए जोकि हमारे फॉर्म से जमा हुई है
इसको करने का तरीका है कि dollar अंडरस्कोर files का इस्तेमाल करें वास्तव में यह सही नहीं है
हम इसका केवल एक उदहारण एको करके बता सकते हैं कि यह सही नहीं है
जब हम करते हैं और मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ हम देख सकते हैं हमें केवल array मिली है ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक अरै है
चूँकि यह मल्टिडाइमेंशनल अरै है कोष्ठकों के पहले सेट में हम फाइल का नाम लिखेंगे जोकि हमने अपलोड की है और इनपुट बॉक्स का नाम जोकि यहाँ से आया है जोकि myfile है
अतः हम यहाँ myfile इस्तेमाल करेंगे और दुसरे में कई अन्य चीज़े लिख सकते हैं और सबसे सहज और सरल कहिये तो फाइल का नाम है
अतः upload form में वापस चलते हैं और intro dot avi को चुनते हैं यह यहाँ दर्शाया जाएगा
अपलोड पर क्लिक करते हैं और अगले पेज पर हम intro dot avi देखते हैं
याद रहे यह हमारा upload dot php फॉर्म है माफ़ कीजिये फाइल
ठीक है तो यह इस प्रकार से था मैं अभी इसे एक वेरिएबल में संचित करता हूँ
अगला हम देखेंगे कि मैं उसे अभी यहाँ लिखूँगा फाइल का प्रकार है
अतः यह डॉलर अंडरस्कोर फाईल्स है और हम रेफेरेंस myname इस्तेमाल करेंगे
और इसके अंदर हमारे पास type होगा अतः यह प्रकार है या बल्कि हम इसे एको करेंगे जिससे कि आप इसे देख सकें
और यह रिफ्रेश किया इसको रिसेंड करें और अब इसको देखिये myfile
इसे resend करें और और हम यहाँ video slash avi देख सकते हैं आप ने शायद यह कहीं पहले html में भी देखा होगा
उदाहरणस्वरुप यह image slash png या image slash jpeg image slash bmp video slash avi और video slash mpeg या कोई और अन्य प्रारूप हो सकता है
इस समय हम यहाँ से देख सकते हैं कि यह एक avi फाइल है अतः इसलिए हमें type में यह मिला
अतः हम कह सकते हैं कि type इन सब के बराबर है
अगला मैं आपको size बताता हूँ अतः समय बचाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इस कोड को कॉपी करूँगा यहाँ पेस्ट करूँगा और इस type को size में बदलूँगा और इसको एको करूँगा
आप देख सकते हैं कि आपकी जमा की हुई फाइल की eproperty प्राप्त करना काफी सरल है
मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा और रिसेंड पर क्लिक करता हूँ और हम फाइल का साइज़ प्राप्त कर सकते हैं
अब चलिए कहते हैं हम इसे लगभग पूर्णांक दस लाख बना देते हैं दस लाख bytes वास्तव में एक
माफ़ कीजिये दस लाख बिट्स एक मेगाबाईट होता है myfile वास्तव में एक मेगाबाईट है
अतः यहाँ दस लाख मेगाबाइट डेटा है
अतः चलिए इसे साइज़ नामक वेरिएबल में सेव करते हैं ठीक है
सही है फिर अगला काफी ज़रूरी है जो है temporary name
यह थोड़ा अलग लिखा जाता है जैसे टेम्प को संक्षिप्त करके tmp और फिर अंडरस्कोर और name
यह हमें डाईरेक्टारी देगा जिसमें यह अस्थायी रूप से तब तक संचित होता है जब तक हम इसे अपनी पसंद के फोल्डर में स्थानान्तरित नहीं करते
अतः इस पेज को रिफ्रेश करें
resend पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि यह एक xampp में जमा हो गया है क्योंकि मैं इस एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ
किन्तु यदि आप apache इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप php खुद से संचय कर सकते हैं
आपके पास यहाँ apache होगा इसके आगे आपकी अस्थायी फाइल का नाम होगा
आप देख सकते हैं यह नाम निरुद्देश्यता से उत्पन्न हुआ है जिसके पास tmp एक्स्टेंशन है
किन्तु अभी यह हमारे लिए निरर्थक है
अतः हम इसे temp file या temp के रूप में संचित कर सकते हैं इसे संक्षिप्त रखने के लिए इसे temp लिखते हैं
और अंतिम error है अब मूलतः यदि सबकुछ सही है तो यह शून्य एको करेगा
फिर से कॉपीपेस्ट और इसको error में बदलिए
हमें अभी शून्य मिलना चाहिए क्योंकि सबकुछ सही से लिखा गया है
और यह कभी भी ऋणात्मकनिगेटिव वेल्यू नहीं होगी
यदि यह शून्य से अधिक है इसका मतलब यह एक एररerror कोड दे रहा है जिसका मूल रूप से मतलब है कि आपके पास एक एररerror है
और चलिए कहते हैं हम इसको error नामक वेरिएबल में संचित करेंगे
ठीक है अभी के लिए इतना ही इस ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे अपनी फाइल को अस्थायी संचयन जगह से आपके पसंद की एक विशिष्ट जगह पर लाकर उपलोड करें
और हम क्या करेंगे कि हम इस error वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे यह देखने के लिए कि यदि यहाँ कोई एरर्सerrors हैं
यदि यहाँ पर एरर्सerrors हैं तब हम इसे एकोecho करेंगे और एररerror कोड इस्तेमाल करेंगे
यदि नहीं हम इस temp को लेंगे और move uploaded file नामक एक विशिष्ट फंक्शनfunction इस्तेमाल करेंगे और हम उसे लेंगे और उसे यहाँ वेब सर्वर पर निर्मित अपनी uploaded directory में संचय करेंगे
और इसके बाद मैं आपको कुछ विशेषताएँ बताऊँगा क्या यह जपेग है हाँ तब jpeg चित्र को अपलोड होने से अस्वीकार करें या विशिष्ट फाइल साइज़ को अस्वीकार करें
ठीक है तो भाग 2 में मिलते हैं आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ देखने के लिए धन्यवाद